इस तस्वीर में किसी चीज का फंक्शन हो रहा है।

इस तस्वीर में एक दुकान का दृश्य नजर आ रहा है जहाँ पे ढेर सारे रैके बनी हुई है।

यह सारी रैके व्हाइट कलर के दीवार के पास हैं।

ऊपर में एक लाइट भी जल रहा है और यहां पे के पास भी एक कुर्सी रखा गया है।

इस तस्वीर में ढेर सारी गाय दिखाई दे रही है।

एक पेड़ दिखाई दे रहा है जिसपे बॉस लगा हुआ है और नीचे में एक बैग एक नाद और सामने में कुछ खेत दिखाई दे रहे है जिसके पास एक आदमी खड़ा है।

उसके बगल में एक ब्लू कलर का घर भी दिखाई दे रहा है उसमें कुछ गमले भी रखे हुए हैं।

ट्रक के पीछे कुछ रस्सी भी बांधा हुआ लग रहा है।

कुछ झाड़ी भी दिखाई दे रही है और कुछ पहाड़ के परत आ ग्रीन भी हो चुके है।

यहां पे नीचे में इन्होंने मैट बीछाया हुआ है जो अलग अलग कलर के है और कुछ बोड़े भी रखे हुए।

उसके बगल में ढेर सारे खिलौने दिखाई दे रहे हैं जो बच्चे के लिए है।

तस्वीर में एक वाइट कलर का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जो दिखने में काफी बड़ा लग रहा है और उसके पास में दो ड्रम रखे गए हैं।